वराडे को तले के अंडे को काट कर अच्छे मलाइ भी बने यहाँ पे अंडे की फ्लाई बन रही है यहाँ पर अंडा फ्लाई होकर अजया या पर खाने में मजा भी आयगा --

ये कुछ डांस सिखने के लिए आ रहे है यहाँ पर बच्चे डांस सिख रहे है और यहाँ पर गुब्बारे भी लगे है कुछ पिले कलर के गुब्बारे लगे है कुछ वाइट कलर कुछ ग्रीन कलर और ग्रीन कलर की चटाई भी बिछी है।